और तालाब की बाउंड्री बनी हुई है अ जो की नीले कलर की बाउंड्री लोहे की दिख रही है सामने एक पेड़ है ।

यहाँ पर एक मछली की दुकान दिख रही है अ दोनों में कुछ मछलियाँ रखी हुई है और टेबलो के उपर कुछ मछलियाँ रखी हुई है।

घर के सामने कुछ कारें खड़े हुए हैं जिसमें से एक कार का कलर व्हाइट है और एक कार का कलर गोल्डन है ।

कार में सामने में एक येलो कलर का नंबर प्लेट लगा हुआ है जिसपर बी.आर. ट्वेन्टी नाइन लिखा हुआ है।

सामने एक गेट लगा हुआ है जो कि काले कलर का है इसमें एक बोर्ड लिखा हुआ है।

टू टू वन सिक्स लिखा हुआ है।

पीछे एल.ई.डी. लाइट आ स्क्रीन लगी हुई है और ऊपर एल.ई.डी. लाइट्स लगी हुई है।

ऊपर में कुछ गोल्डन लाइट्स लगी हुई है और कुछ ट्यूब लाइट्स व्हाइट कलर की लगी हुई है हॉल में ए.सी. लगा हुआ दिख रहा है।

ग्राउंड के अंदर ही कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक क्रीम कलर का घर दिख रहा है घर के सामने में भारतीय डाक का बोर्ड टँगा हुआ है।